और रोड जो की बहुत लम्बा है रोड है |

और जो आसमान भले ही मलिन दिख रहा है बस मान छायें है बादल और फूल माला से सजायें हैं मंडप ये बहुत बढ़िया लग रहा है --

छा रहे हैं बादल हैं बहुत सारा ईंटा है है ।

यहाँ पे जो है एक टोपी लगाए हैं कर रहे हैं वेल्डिंग माक्स लगा कर चश्मा पहन --